स्कूल का जो बॉउंड्री है उस पर लिखा हुआ है हमारे --

बड़े लोग को भी झूले में वाला झूला है।